डांस कर रहे हैं लोग कुछ बच्चिया कुछ लड़कियां बहोत ही प्यारा डांस कर रही है।

और यहां पर सभी प्रकार का सामान जैसे कि दूध दही घी आइसक्रीम --

तोड़ कर नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं और यह दिखने में बहुत ही--

और लड़कियों के लिए यहां पर कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

बजाने वाले संगीत में जो यंत्र यूज़ होता है जो उपयोग होता है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है।

यहां वड़ा पाव बिक रहा है यह वड़ा पाव की दुकान है।

का बता रही है कचरा कहां फेंकना है हमारे स्वच्छ भारत--

वॉव कितना प्यार और कितना सुंदर दिख रहा है।